अनाज रखने के लिए थैलियां भी हैं वहां पे।

बस है बहुत सारी औरतें हैं सब जा रहे हैं यहां पे।